सामने एक झरना है बड़ा सा अगल-बगल पेड़-पौधे है रास्ते है।

यहाँ पर बहुत सारे अ टोटोस रुके हुए हैं ऑटो है।

लोग है उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं रास्ते खाली है रोड पे सामान रखे हुए हैं।

ये भी एक पार्क का फोटो है यहाँ पर एक अंकल खड़े होकर है मैदान मैदान के पास छोटे-छोटे पौधे है।

झील है उसमे नाव है उम नाव चल रहा है दो लोग बैठे हुए है एक चला रहे एक बैठे हुए है।

अ फिर गार्डन है पौधों से भरा हुआ घास है छोटा-छोटा छोटे-छोटे पौधे है रास्ते रोड है खिड़की --

और साइड में एक वॉल पे सोर्स भी है उसमे एक स्पून है और राईट साइड में भी दो स्पून और एक प्लेट है।